और यहां पर कुछ व्यक्ति बिल्डिंग के पास खड़े हैं और बिल्डिंग के आगे गाड़ियां पार्क की हुई है और इधर--

और इसके आगे डेकोरेशन किया हुआ है और अंदर--

यहां पर सफेद कलर की दीवार बनी हुई है और उस दीवार में--

और उसके आगे एक खंभा लगाके उसमें लाइट लैंप वाली लाइट लगाई गई है और यहां कुछ व्यक्ति खड़े हैं।

और यहां पर काफी सारी काफी सारे बेड लगे हुए हैं जिन पर--

आगे ये चार दिवारी बनी हुई है सफेद कलर की और यहां पर कुछ लोह के गेट लगे हुये हैं और इसके आगे --

रेड कलर का कार्पेट बिछा हुआ है और यहां पर दो दोब लगी हुई है और कुछ व्यक्ति यहां पर --

ये एक मेज बनी हुई है जिसपे लाल डब्बे हैं और कुछ तेल की बोतलें रखी हुई है।

यह एक मंदिर का फोटो है और इसमें एक--

और पीछे कुछ कांच लगा हुआ है और--

लगे हुए हैं और यहां पर बैठने के लिए स्टुल बनाई हुई है और पीछे एक सफेद मकान बना हुआ है।

चारों ओर लाइट का डेकोरेशन किया हुआ है और उसके आगे एक गाड़ी पारक की हुई है।